बड़ा सा गार्डन है जो हरे रंग की घास उगी हुई है अगल बगल पेड़ पौधे सफेद रंग का पेंट किया गया है बड़े बड़े पेड़ पौधे है जो हरी भरी पत्तियां हैं।

कुछ खंबे गड़े हुए जिससे तार गइ हुये सफेद दो नीले रंग के आसमान है।

ए बड़ी बड़ी खंबे गड़े हुए हैं जो लाल रंग के हैं नीचे एक साइड पे रड पड़े हुए लाल रंग की और कत्थे रंग की मिट्टी कुड़ियां गई है भूरे रंग के सफेद और नीले रंग के आसमान है।

और एक टी.वी. लगा हुआ जो टी.वी चल रहा है बगल में चित्र बनाए गए दीवाल में कुछ औरत के चित्र और लड़के के चित्र बने हुए हैं।

छोटा सा रेस्टोरेंट है जो सफेद रंग की है चार कुर्सी है काले रंग की सोफा सेट है भूरे रंग की और छोटे छोटे--

कुर्सी रखी गई है जो सफेद रंग की कुर्सियां। अगल बगल कांच लगाए गए हैं सफेद रंग के कांच के ऊपर पंखा चल रहे हैं सफेद रंग की। बगल में ऐ.सी. लगाई गई है सफेद रंग की।

तीन कुर्सियां हरे रंग की एक टेबल बिछा हुआ जिसमें टिशू पेपर रखा हुया हे।

लगा हुआ जो सफेद रंग की अगल बगल कुर्सी और टेबल रखे गए है सफेद रंग की कुर्सी है अगल बगल गमले रखे गया सफेद रंग के।